सामने सड़क है दो भैंस है एक औरत है सामने एक बिल्डिंग है जो कि व्हाइट कलर की है पीछे एक लड़का है जो साइकिल के ऊपर है।

जाने के लिए सीढ़ियां हैं और एक ग्रीन कलर का ऊपर पेट है।

सामने दो वाइट कलर की कार --

ग्रीन कलर के पेंट हैं चारों तरफ दीवार है जो कि पिंक कलर की--

तीनों ने येलो फोम टाइप कुछ पहना है एक लड़की है जिन्होंने पर परी की ड्रेस पहनी है दो अंदर उं आदमी हैं।

साइड में सामने एक औरत और एक आदमी जोकि बाइक पे है सामने एक रिक्शा है आगे पुलिया है जो --

ग्रीन कलर के पेड़ है पांच सात लड़के हैं जिन्होंने ब्लू ब्राउन व्हाइट --

इधर एक साइड में टावर है और सामने कुछ बना हुआ है खेतों में पानी है।

और क्रीम कलर का टॉप पहना हुआ है इसमें का कलर ब्राउन है और रेड है।

येलो कलर की बस है एक वाइट कलर का टेंपो और ग्रे कलर की कर है।